शेर दिखाई दे रहा है ज्यो जो की बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है सामने देखने पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है जो की बहुत ही हरे भरे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर मुझे तलाब बो बो बोर दिखाई दे रही है बोट के ऊपर मुझे बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है जो की बोट कि चलाते हुए दिखाई दे रहे है तलाब मे बहुत पानी--

यहाँ पर कार का गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है जमीन का कलर मुझे ग्रे दिखाई दे रहा है कार के काँच पर मुझे रिफलेक्ट आते हुए--

उसके पास मुझे कई सारे औजार दिख रहे है जेसे की हथोड़ी छेनी दिख रही है और यहाँ पे एक वायर भी दिखाई दे रहा है जो की ब्लैक कलर का है।

यह तस्वीर मे मुझे एक कैफै दिखाई दे रहा है केफे के अंदर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।